बोहोत रेड कलर की चेयर स्टूल दिखाई दे रहा है बुक्स बोहत तरे कि बुक्स और बोहत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है। खिड़कियाँ दिखाई दे रही है। गमले दिखाई दे --